काफी हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जहां से कि बाहर देख सकते हो काफी बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है।

पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे है और सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेबल चेयर लगी हुई है जहाँ पर एक लेडिस टेबल पर बैठ कर देख रही है और एक जेंस टेबल पर बैठ के खा रहा है और कुछ--

जो एक बिल्डिंग है वहां पर एक बैंक भी खुला हुआ दखाई दे रहा है यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ दिख रहा है एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ--

जैसे कि आप सामने देख सकते हो काफी बहोत बड़ी पार्किंग पार्क है।

भी घर दिखाई दे रहे हैं जैसे कार भी दिखाई दे रही है और बैठने वाली चेयर

कारें के लिए पार्किंग खड़ी करने के लिए बनी हुई है यहां पर आप देख सकते हो रेड कलर के पैक --

जैसे कि आप सामने एक देख सकते हो काफी बड़ा--

जैसे कि आप सामने देख सकते हो काफी--

जैसे वहां पर तीन चार गाड़ियां आपको दिखाई दे रहीं होगी।

बिजली सप्लाई भी दिखा रही यहां पर बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा--

खंबे भी दिखाई दे रहे हैं शैडो में --

ये काफी पुराना एक पिंड है यहां पर उनको--

और चद्दरों का टीन छोटा डाला हुआ है एक उसके साथ उससे बड़ा टीन लगा हुआ है एक हरा सा पेड़ लगा हुआ है।

हरे पड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है। फ्लावर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये--

कि यहां पर एक दो प्लेटो पर लड्डू रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वहां पर--